इसपे लिखा है होटल सिंह रेसीडेन्सी ।

और चित्रकारी करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना सामान टेबल पे रखा हुआ है।

उनके सिर पर देखे तो एक मोरपंख भी लगा हुआ है जो की बहोत ही सुन्दर लग रहा है।

इस तस्वीर में आप देखिये तो हमें एक आदमी नजर आ रहा है जिसने की काले रंग की शर्ट पहन रखी है।

और एक लड़का भी दिखाई दे रहा है जो की मोटरसाइकिल पर बैठा है।

इस तस्वीर में हमे बहुत सारी महिलायों की भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर बोहोत सारी लड़कियां भी दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ देखिये तो आसमान बहुत साफ़ दिखाई दे रहा है।